बीचों बीच गैलरी में रोड बनी हुई है।

और दूर दूर तक पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े।

गद्दे भी लगे हुए हैं जो की सफेद और लाल रंग के हैं।

बेड के पास एक और बेड पड़ा है जिस पर लाल रंग का गद्दा--

और कुछ केक सफेद और काले और कुछ केक लाल--

और बहोत सी सफेद सफेद डिब्बियों में रखी हुई हैं।

इधर दिवाल से लगी एक साइकिल भी खड़ी हुई है।

यहां पे एक लेडीज जो की नाचती हुई नजर आ रही है।

और यह ए_टी_एम बड़ौदा का है।